लोग आ रहे बाहर बहुत सारे गड़िया खड़ी है डेकोरेशन किया हुआ है डेकोरेशन पूरा पिंक कलर का दिख रहा हैं लाइट्स जल रही है बहुत अच्छा--

परिवार दिख रहा है जिसमे एक आदमी दो बच्चे तीन लेडीजे खड़ी है वह अपने सर पे कुछ रखे हुए है।

यह एक जिम की फोटो है। जिसमे बोहुत सारे अलग अलग तरीके की मशीन है। सामने मिरर लगा हुआ है। एक लड़का खड़ा है। टीशर्ट मे जिसने रेड कलर की टीशर्ट --